इस लड़के ने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है।

यह तस्वीर एक योगा क्लास की तस्वीर है यहां हम कुछ महिलाओं को बैठकर योगा करते हुए देख रहे हैं।